अलमारियां बनी हुई हैं और अलमारियों में--

और अलमारी के सामने एक रोशनदान खिड़की बनी हुई है।

और द्रव्त के साथ ही दो मोहर खड़े हुए है और उसकी एक साइड पर --

ये एक तफरीही मुकाम हैजहां--

बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यह एक इमारत की तस्वीर है जिसके सामने एक--

ये एक खिलौने की दुकान है जहाँ बहुत सारे खिलौने पड़े हुए है औ --

ये एक बाग है जहां बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं।

ये एक वज्रिश की इमारत है जहाँ बहुत सारे लोग आकर वज्रिश करते है ।

चार गुब्बारे लगे हुए है और उस उन गुब्बारों के नीचे एक कुर्सी पड़ी हुई है ।